ये एक घर से लिया गया है चित्र।

जो बहोत सारे लोग हैं |

यह चित्र एक तालाब की चित्र है।